टमाटर गाजर --

य एक कुंडन बन्ने के लिए तैयार हो रही है| यहाँ तख्ला पावड़ा गिट्टी आदि सामान पड़ा हुआ है| एक पाईप लाईन गई है।